टब है और एक चेयर है।

एक आदमी है और शर्ट पेंट --

ये एक स्टेज है और बहोत सारे लोग हैं जो स्टेज पे --

डांस कर रहे हैं और म्यूजिक बज रही है लाइट भी अच्छी --

यहाँ पर कुछ एक बोल टंगी हुई है।